ये एक रेस्टोरेंट दिख रहा है यहाँ कंटेनर दिख रहा है यहाँ टेबल दिख रहें हैं यहाँ कुर्सियाँ दिख रहीं हैं।

ये एक फिश मार्केट दिख रहा है यहाँ टेंट दिख रहे है यहाँ कुछ बॉक्स दिख रहे है यहाँ फिश दिख रही है यहाँ कई व्यक्ति दिख रहे है।

यहाँ दरी दिख रही है लालटेन दिख रहा है यहाँ लाईटिंग दिख रही है कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं यहाँ कुछ महिलाएं दिख रही हैं यह एक झूमर दिख रहा है।

एक जिम दिख रहा है यह जिम इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है यहाँ लाइटिंग दिख रहीं हैं यहाँ बॉल दिख रहीं हैं।

ये एक विद्यालय दिख रहा है यहाँ कुछ व्यक्ति दिख रहे है यहा कुर्शी दिख रही है यहाँ टेबिल दिख रही है यहाँ झुमर दिख रहा है।